ये किसी रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे बाहर की ओर बहोत ही खूबसूरत व्हाइट और --

ये एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे के दरवाजे पर लाइटों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत सजावट करी हुई नजर --

ये एक किसी झोपड़ी जैसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है यहां नीचे की ओर --

और भी नमकीन वगैरा के भी पैकेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे बिस्कुट के भी पैकेट रखे हुए नजर आ रहे हैं।

आ रही है यहां पे कुछ लड़कियां और एक लड़का है जिसके हाथ में बच्चा है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

छोटे बड़े साइज के ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए नजर आ रहे है।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

ये किसी धर्मशाला के गेट की फोटो दिखाई दे रही है जोकि एक बहोत ही पुराने टाइप का लगा हुआ गेट है।

और स्टेज के नीचे कि ओर कुछ लोग बैठकर और कुछ लोग खड़े होकर ये सब देखते हुए नजर आ रहे --

ये एक स्टेज की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे कुछ तीन लड़कियां है जो डांस करती हुई नजर --

ओढ़ा हुआ है और ये तीनों बैठ कर ये कुछ डांस की स्टेप करती हुई नजर आ रही है।

ये किसी नदी की फोटो दिखाई दे रही है जहां नदी में बहुत सारे पक्षी घूमते हुए --

यहां पे बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।